ये एक नंदन वाटिका पार्क है।

ये एक बार या लाउंज है।

ये एक सुपरमार्ट है।

और बाहर में भी एक बाइक है और उसे बाइक के जस्ट बगल में एक आदमी खड़ा है।

और एक बाइक पे तो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं।

ये एक मॉल है इस मॉल में बहुत सारे लड़का-लड़की आपस में कुछ-कुछ खरीदारी करने आये हैं।

और बहोत सारे लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं।

पीछे में कॉलेज का बिल्डिंग है।

एक आदमी स्कूटी से जा रहा है।

ऊपर में चद्रा लगा हुआ है पाइप है लोहा का।

ये एक होंडा का सर्विस सेंटर है।

एक आदमी अंदर में खड़ा है और डोर पे डोर मेट रखा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है।

और दो चार लोग ऊपर में बैठे हुए झरने के--

यहां पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बगल से एक वाइट रंग का मोटा सा पाइप भी ऊपर जा रहा है।

और वो इस पार्ट पुर्जा को बना रहा है।

पीछे में बहुत सारा सेविंग्स का प्रोडक्ट रखा हुआ है।

यहां पे यामाहा सर्विस लिखा हुआ इसके बोर्ड पे।